मिलती है। यह एक बाजार है।

यह चिड़िया घर में --

यह मैरिज हॉल में प्रति एक दिन --

और डाइनिंग टेबुल लगाया गया है।

यह ढाबा में आर्डर अनुसार खाना बनता है।

यह पहाड़ में एक बहुत बड़ा गड्ढा है।

यह एक मेन्स ब्यूटी पार्लर है।

बाल कटिंग फेश वॉश किया जाता है।

यह कॉफी शॉप में--

अलग-अलग प्रकार की कॉफी मिलती है।